बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग को देख कर लग रहा है यह काफी प्राचीन काल की है सामने की और मे दरवाजा दिया गया है दरवाजा बहुत बड़ा है।

सामने की ओर मे एक मैदान है मैदान की बीच मे एक गडा बनाया गया है जिसमें देखने पर लग रहा है कि पानी भरा जाता है ऊपर की और आसमान है जो की नीला है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग काफी बड़ी है और चारों तरफ से बनाई गई है बीच मे एक तल घरा बना हुआ है। नीचे देखने--